ये पीले टीशर्ट पहने हुए हैं और लाल बैग थामे हुए हैं और ये कोई बिल्डिंग वगैरह का फोटो है। बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत लग रहा है।

ये फोटो बहोत ही अच्छा लग रहा है। ये भाई साहब देखिए कैसे देख रहे है? जैसे बहोत मोटे आँखें --

का खुद का टकला है ये। दूसरों का भी टकला करते हैं। ये फोटो बहोत अच्छा लग रहा।

ये एक इम्बा मस्जिद है। ये मस्जिद बहोत अच्छी लग रही है। इसमें बहोत सारी शम्में लगी हुई हैं। मैट भी बिछी हुई है। ये एक मुस्लिमों की मस्जिद है जिसमें ये लोग नमाज़ पढ़ते हैं।

ये फोटो बोहोत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए भाई साहब पूजा कर रहे है और भाई साहब बैंड बाजा लेके बैठे हुए पूजा करवा रहे हैं। ये देखिए मंदिर के पिछले भी लगे हुए --

ये देखिए इनका घर बोहोत अच्छा लग रहा है। ये देखिए गेट भी अच्छा लग रहा है। ये देखिए बैलून भी लगे हुए हैं। ये फोटो बोहोत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए बैलून नीले कलर के लाल कलर के भी हैं।

ये फोटो बोहोत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए भाईसाहब यहाँ पे पैसे निकालने आए हुए है। ये देखिए ये फोटो बोहोत ही प्यार खूबसूरत और अच्छा लगा रहा है।

ये फोटो बोहोत ही अच्छा लग रहा है। ये दीदी देखिये कैसे खड़ी हुई है यहाँ पे ? ये फोटो बोहोत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा और अच्छा लग रहा --

ये लोग भी हैं। ये फोटो बोहोत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये दीदी देखिये कैसे बच्चों को सीखा रही है। ये लिखना पढ़ना ये देखिये बोहोत अच्छा --